मेरे सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर की चोटी बहुत ही ऊंची दिखाई दे रही है।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

अलमारी भी लगी हुई दिखाई दे रही है अलमारी का कलर --

यहां पर एक बैटरी भी रखी हुई दिखाई दे रही है यहां पर बहोत सारे बॉक्स भी रखे हुए दिखाई--

टेंट दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत बड़ी वाटिका दिखाई दे रही है।

यहां पर नांव भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है यहां पर एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

होटल में बहोत सारे पिलर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं होटल की दीवार का कलर येलो कलर का दिखाई --

दे रहा है यहां पर नंबरदार होटल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुत्तों के बिस्किट भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी लाइटे भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

मेरे सामने बहोत सारी बसे में भी दिखाई दे रही है।

कलर यल्लो कलर का दिखाई दे रहा है। पहाड़ पर बहोत सारे छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई दे भी रहे है। वहां पर कुछ आदमी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं पहार से झरना बैह रहा है दिखाई दे रहा--

हमे एक शॉप दिखाई दे रही है शॉप ये दिखाई दे रही है यहा पर बहोत सारी--

बिल्डिंग में का कलर वाइट कलर का दिखाई दे रहा है बिल्डिंग में शीशे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

मेरे सामने एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में गैस --

ये जिम है बहोत सारी मशीनें भी दिखाई दे रही है जिम के मशीनो का कलर एलो कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे बलून भी लगाये दिखाई दे रहे हैं यहां पर बलूना अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं।